बिखरे हुए पड़ा देख रहे हैं।

खिंची गई है और यह हाइवे पर स्थित है।

तस्वीर खिंचवाई जा रही है।

दिखाया जा रहा हैं।

डाले हुए दिख रही हैं।

अलग टेस्ट होता है।

गुलाब के फूलों को आप तस्वीर में--

आप नेशनल हाईवे रोहतक तक देख रहे हैं।

हॉस्पिटल में सर्चिंग के लिए लगाया गया है।